घर बन रहा है और यहाँ पर एक टंकी जैसा ही बना हुआ है और चारों तरफ बड़े --

और बहोत ही दूर में दो बड़े-बड़े टावर्स भी लगें हुए --

और चारों तरफ गार्डेनइंग भी किया हुआ है और एक बड़ा सा --